ये यहां पर एक रोड देखने को मिल रहा है रोड के बगल में मुझे यहां पर दो--

मुझे यहां पर एक दीवाल देखने को मिल रहा है दीवाल पे मुझे बहुत काई लगा हुआ देखने को मिल रहा है दीवाल के अंदर मुझे--

ग्रीन कलर से पेंट होआ हुआ देखने को मिल रहा है स्कूल से बगल में मुझे बहोत सारे--

इरी देखने को मिल रहा है सीडी से बगल में मुझे यहां पर वाइट कलर से--

लाइट देखने को मिल रहा है हमें ऊपर में फैन देखने को--

दुकान देखने को मिल रहा है दुकान के ऊपर मुझे फुल लगा हुआ--

इंजीनियर देखने को मिल रहा है इंजीनियर के नीचे हमें यहां पे यहां पे मशीन देखने को मिल रहा है मैं सामने में --

ये यहां पे एक स्टूल देखने को मिल रहा है स्टूल के बाहर में मुझे एक पिलर देखने को मिल रहा है वहीं पे मुझे --

ये यहां पर एक खुला मैदान देखने को मिल रहा है खुला मैदान में मुझे में बहुत सारे--

मुझे यहां पे एक क्लास रूम का फोटो देखने को मिल रहा है मुझे यहां पे एक म्यूजिकल --

इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल रहे हैं मुझे यहां पे बहोत सारे टेबल देखने को मिल रहे हैं मुझे यहां पे--

मुझे यहा पे नदी देखने को मिल रहा है नदी का पानी मुझे काला देखने को मिल रहा है।

मुझे यहां पर एक ए_टी_एम का देखने तो मिल रहा है ए_टी_एम के नीचे हमें एक--

ए_टी_एम मशीन देखने को मिल रहा है ऊपर भी में हमें सी_सी_टी_वी कैमरा देखने--

मुझे यहां पे घर देखने को मिल रहा है घर के बगल में मुझे यहां पे ये--

मोटर का पाइप देखने को मिल रहा है मोटर का पाइप के बगल में मुझे यहां--

यहां पे चर्च का फोटो दिखने को मिल रहा है। चर्च के ऊपर मुझे प्लस का साइन बना हुआ दिखने को मिल रहा है।

आने वाला फोटो आदमी देखने को मिल रहा है हमे यहां पर मिल रहा राक्षस देखने को मिल रहा है जिसने हाथ में--